अंकल बैठे हुए है इस चेयर पे बैठे हुए है टोपी लगा के बैठे हुए हैकाफी सारे म काफी सारे पेन वगैरह कॉपी वगैरह भी रखी हुई है।

--और कैलकुलेटर रखा हुआ है मोबाइल पकडे हुए हैवह और इरेज़र वगैरह भी रखी हुई है और पपेरशीट वगैरह भी यह पे राखी हुई है और यह पे मतलब सब कुछ ही रखा हुआ है।

अरे और यहां पर भैया आएगा नाव चला रहें हैं सामान रख कर दूसरी तरफ ले जा रहें हैं।

और काफी ऊंचाई लग रही है यहाँ पे मुझे। पेड़-पौधे भी वहाँ पे बहुत सारे हैं लग रहा है। वहाँ पे छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी बहुत सारे हो रखे हैं और ये भैया फोटो घी --